एक एक इलेक्ट्रॉनिक के दुकान दिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे--

पौधे लगे हुए हैं बहुत घना जंगल भी दिख रहे हैं इसमें।

यह बरबाद बरा मैदान दिख रहे हैं।

और एक जेंस भी इसमें बैठे हुए है पान बेच रहे है।

और एक पीछे बड़ा सा वृक्ष भी दिख रही है।

एक छोटा सा किराना दुकान है।

किलो भी दिख रहा तराजू भी दिख रहे हैं दो छाता दिख रहे इसमें टांगे हुए हैं बारिश वाली छाता और एक परदा टांगे हुए हैं।

और एक साइकिल दिख रहे हैं उसके छत छत एगो उसके बगल में पेड़ भी दिख--

लाइट भी जल रही है इसमें बहुत सारे फैन भी बहुत सारे करकट टाइप के बने हुए हॉल टाइप के।

बहोत सारे डम्बल भी दिख रही है बहोत सारे प्लेट दिख रहे हैं और लाइट भी दिख रहे हैं इसमें फैन भी दिख रहे बहोत सारे।

और मिर्ची भी दिख रहे में कद्दू भी दिख रहे हैं एक छोटा सा टेबल पे कद्दू रखे हुए हैं।